इसका जो गेट है वो भी कांच का गेट हैं यहाँ नीचे पे एक बिलिंग काउन्टर है जहाँ पर लोग अपना सामान खरीद के बिल बना रहे है गेट पे कुछ लोग खड़े हुए हैं ।

ये गेट पे दो से चार काली सीढ़ियाँ बनाई गई है और फिर उसका एक गेट है जो काँच का गेट है इसके साइड में एक बैंक भी हैं।

रास्ते के एक साइड पे हरे-हरे छोटे-छोटे घास भी लगे हुए है रास्ता कप रास्ता पूरा पिच किया हुआ है रास्ता पूरा पक्का है।

ये एक पहाड़ हैं जो कहि से ऊंचा तो कही निचा है पहाड के बिच से एक रास्ता गया है जो कहि बालि का रास्ता तो कही ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता हैं।

सारे नीले रंग के सोफ़े रखे हुए है यहाँ पे एक-एक रो में आठ सोफ़े लगे हुए है इस तरह यहाँ पे पाँच रो बनाई गई हैं।

एक भवन है जिस के बहार तीन से चार झंडे लगे हुए है यहाँ पे एक हरे लाल पीले रंग के झंडे है एक केसरिया रंग का झंडा है एक पूरा हरा रंग का झंडा लगा हुआ हैं।

फूल लगाई गई है स्टेज पे जो सोफे भी है एक का रंग लाल और गोल्डन है दूसरा सिंगल चेयर रखा हुआ है सोफे पे --